इस रोड पे एक बाइक खड़ी हुई है जिस पर एक लड़का बैठा है।

जिनके बगल में बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

इस पिलाट में बहोत से मुसलमान बैठे हुए हैं जिन्होंने टोपिया लगाई है।

यहां पर हरे हरे बहुत सारी घास लगी हुई है।

यहां पर बहोत सारी घास लगी हुई हैं जा--

नारियल के पेड़ के बगल में एक आदमी बैठा हुआ है।

नदी के अंदर एक नाव खड़ी है जिसमें एक आदमी मछली पकड़ रहा है।

नदी के बगल में एक काले रंग की गाड़ी खड़ी है।

और बगल वाले दुकान पे एक लाल कलर का बैनर लगा हुआ है।

जिनके चारों तरफ बहोत बड़े से पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर एक आदमी गाड़ी में हवा भर रहा है।

पेड़ के बगल में पानी की टंकी रखी हुई है।

जिनका रंग खाकी कलर का है उनके सामने जीने बने हुए हैं।

यहां पर दुकान के सामने टोकरी में बहोत सारी सब्जियां रखी हुई हैं।

एक ने हरा रंग का शल्ट पहना हुआ है।

यह एक दुकान है जहां पर बहोत से लोग सामान खरीद रहे हैं।